एक हवेली दिखाई दे रही हे उसमे कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हे और कुछ फूल वागेरह के पौधे भी दिखाई दे रहे हे जिस मे मेदान भी है ओर--

एक दुकान दिखाई दे रही है वहाँ पर आदमी बहोत सारे खड़े हुए है साइकिले रखी है एक लुना रखी हुई है बोरी वॉरि वगेरा रखी हुए है शटर भी है बगल मे उसमे भी आदमी है दुकान है किराने की शायद।

टार्च भी दिखाई दे रही है पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही है चबूतरा भी दिखाई दे रही है पीछे कुछ नज़र नही आ रहा है और एक मूर्ति वगेरा सी बनी हुई है कुछ हाथ में लिए हुए है वो मूर्ती --

ये एक होटल दिखाई दे रही है जहाँ पर कुर्सी -उरसी रखी हुई है और टेबल भी रखी हुई हैं।

बड़ा सा पौधा बाहर में भी छोटा सा पार्क सा है जहाँ पर आदमी क्ले में एक सूखा पेड़ भी डरा हुआ है और एक रोड भी निकला है वहाँ से और बा --

ऑफिस दिखाई दे रहा है उसमे कुछ बोतले वोतले वगेरा रखी हुई है शी- शिशि बना हुआ है और छोटे छोटे गमला भी रखे है ऊपर डंडो पर टार्च भी लगी हुई है।

एक स्कूल दिखाई दे रहा है दो तीन चार गाड़ी दिखाई दे रही है एक लड़की जा रही स्कूल मे और वहाँ पर राखी हुई है। ]